यह नजारा देखिये कितना झकाश नजारा है कितना बढ़िया है बहुत सुन्दर नजारा है ये देखने लायक नजारा ही है वाह क्या --

ओह माय गॉड कितना अच्छा जगह है ये देखने लायक लग रहा है ये जगह भी कितना सुंदर है।

इधर भी पौधा है इधर क्रिकेट खेल रहे है लोगो ने कितना बड़ा है बाप रे इतना बड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा था कसम से यार।

क्या बात है कितना सुन्दर है बहोत अच्छा है बहोत अच्छा है गौड़ लगे भगवान जी के हम भी गुरु दया करिएगा भगवान बहोत अच्छा काम है ये बहुत सुन्दर लग रहा है अच्छा लग रहा है क्या बताऊ बहोत अच्छा लग रहा इतना अच्छा लग रहा है मत पूछो।

अच्छा भईया आपने घर बनवा रहे होंगे या माट बनवा रहे होंगे या कुछ भी बनवा रहे होंगे बहोत अच्छा तरीका से डाव खानवा रखे है।

ये हाथ में कला है बहो मिस्त्री भईया का बहोत अच्छा है बहोत अच्छा बहोत हैंडसम लग रहे है आप भी बहोत सुन्दर--

ये टुफान इतना है मत पूछिए कितना अच्छा बेवस्था है यहाँ पे गर्मी में यार बेड लगाने की कोई जरुरत नहीं है यहाँ पे भुइँया में आदमी सो सकता है एक चादर बिछा दो --